सारे बर्फ ही बर्फ है और उस पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और चारों और बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहें हैं पेड़ पर बिल्कुल भी लीव्स नही दिख रहीं हैं और पेड़ बस लकड़ी --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

खड़ी हुई हैं और पेड़-पौधे और घांस भी दिखाई दे रही है पेड़ों पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दे रहें हैं और कहीं कहीं घांस हेतु बहुत सारा कचरा भी दिखाई दे रहा है।

डला हुआ है और वहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे देखने को भी मिल रही हैं और उन पर हरी-हरी --